और यहां आते हैं टेबुल चार्ट पे बैठके बात करते हैं और कुछ खाते हैं और पेमेंट करते भी जाते --

और उनको खाने के लिए पानी खाना सब है पास में--

ये एक विश्व रक्तदान शिविर है।

ये बस स्टैंड में बहोत सारा सिटी बस हैं।

ये एक ऑफिस है यहां पर बाहर में एक फैन लगा है।

और ऑफिस का काम सब कर रहे हैं।

यहां पर लोग आते है अपना पेसा लेके जाते है और जमा भी करके जाते है।

या उसको कोई उसकी क्षति न पहुंचाए इसलिए वो अपने--

जिला स्कूल की ये है।

ये संभलपुर का चुटकू चूटा ये--

सब्जी भेज नॉन वेज मछली चिकन --

और यहां बहोत बाहर में बहोत अच्छा सजावट की--

ये एक पहाड़ी जगह है। यहां पर लोग आते हैं पिकनिक कर करके जाते हैं।

टेबुल चेयर सब लगा है और बेंच जैसे बना हुआ है बैठने के लिए।

ये एक मॉल है यहां यहां बहोत सारे चीज मिलता है यहां पर बहोत सारा --

दो अ दो स्क्रीन मिलता है विंडो स्क्रीन सोफे कवर टी_वी कवर ये सब बहोत सारा चीज मिलता हैं।

यहां पर लोग आते हैं। ये सब लेके जाते है।

और कोई कुर्ता का टू नाइंटी नाइन और पैंट का दाम भी लिखा है।

और अह बाकी दुकान सब बंद रखा है।

ये सब चीज बिरयानी ये सब चीज यहां पर मिलता है।

इसलिए लोग फैमिली ले के बच्चे को ले के आते हैं खाने के--

ये एक घर है इस घर के अंदर बहोत अच्छा सजा हुआ है डाइनिंग टेबल पकाया है और परदे भी लगे हैं।